ये ऑटो रिक्षा ड्राइवर है जोकी ऑटो रिक्षा मे सवारी बिठाने मे सवारी बिठाने के लिये सवारी देख रहा है ऑटो खडा हुआ है।

सेलून है जहा पर बनवाइ जाती है।

बहुत सारी मशीने दिख रही हैं बॉडी दिख रही हैं उन लोगो की जो उनने बॉडी बनाई हैं वो बॉडी दिख रही हैं सेल्फी में खड़े हुए हैं बहुत--

ये एक मंदिर है यहाँ पर एक पंडाल बना हुआ है और बहुत सारे लोग भीड मे खडे हुए है लायटिंग्स लगी हुई है।

टेन्ट लगा हुआ है बडा टेन्ट लगा हुआ है एक मंदिर है जहा पर लोग दर्शन के लिये खडे हुए है।

स्पेर सलून है जहां पर कटिंग कराई जाती है।

यह एक सभा लगी हुई है जिसमे दो व्यक्ती बात कर रहे है और अन्य व्यक्ती जवाब देने के लिये बैठे है एक बहुत एक ऑफिस है कई लोग --

यह ऑटो है बहुत सारी बस्से है यहाँ से आ रही हे जा रहे है।

अ डेकोरेशन है बो कि बहुत अच्छा है दो कप कपल्स जो है वहा पर सेल्फी निकलवा रहे है बहुत अच्छी लायटिंग है।

बहुत अच्छा नजारा है जोकी देखने लायक है बहुत अच्छा लग रहा है।

यह बैंक है बैंक के बहार बहुत सारी गाड़िया रखी है जो की लोग आये है अपने पैसे निकालने या जमा करने के लिए उनकी बहुत सारी गाड़िया रखी है यह एक बचत खाता बँक है।

जिसमे बचत खाता बैंक कहलाती है जिसमे लोग आकर अपनी बचत पैसे जमा करते है और जरुरत होने पर निकाल--

ये एक शादी है जिसमें लोग स्टेज पर बैठे हुए हैं बहुत अच्छा डेकोरेट स्टेज है जो कि लोग आए हुए हैं।

एक व्यक्ती जो ये यहाँ कि सफाई कर रहे है सफाई कर रहे है जोकी झाडू से कर रहे है।

एक शादी का माहोल है जहाँ पे सब लोग सेल्फी निकलवा रहे हैं सेल्फी बहुत अच्छा फ्लावर डेकोरेशन है।

इसमें फ्लावर डेकोरेशन है फॅमिली के साथ फोटो निकलवा रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा खूबसूरत देखने को मिल रहा है ये मौका बहुत अच्छा है।

लाइट्स लगे हुए है ओपनिंग है बलून्स लगे हुए है।

मंदिर है मंदिर मे बहुत सारे पुजारी है भक्त है बहुत अच्छा डेकोरेशन --

बहुत सारे सरीये दिखाई दे रहे है बहुत सारे रॉड़े दिख रॉड़े दिखाई दे रही है बहुत सारी क्युकी ईटों से है कुछ इस सरीये डले हुए है यहापर बहुत क्युकी घर बन रहा है।